तरह तरीके का पिक बना हुआ है।

एक बड़ा-सा हॉल है।

एक जेंट्स और है जो मैरून कलर का टी-शर्ट पहने हुआ है ।

घास है एक छोटा-सा पेड़ है।

आगे में शीशा है नीचे जमीन पे बहोत सारा कचरा है। एक गे --

फ्रिज है उसमे बहुत-सा हवा हवाई भी है।

एक घोड़ा है भगवान जी येल्लो कलर का कपड़ा पेहने हुए हैं।

सर पे पन्नी बांधे हुए है।

क्रीम कलर का कुर्ता पहने हुए है।